बिल्डिंग के बराबर मे बड़ा वृक्ष है पेड़ है ओर बिल्डिंग के सामने --

शॉप मे लाइट्स ऑन है। काफ़ी सारी रैक्स लगी हुई हैं। डिफ्रन्ट डिफ्रन्ट रेक्स मे डिफ्रन्ट डिफ्रन्ट क्वालिटी और क्वानटिटी वाइज़ और मैटेरियल रखा हुआ है।

एक आइरन रैक है जिसमें डिफ्रन्ट सेल्फस हैं और डिफ्रन्ट सेल्फस मे डिफ्रन्ट डिफ्रन्ट तरीके का मटीरीअल रखा हुआ है।

इस इमेज में हम नेचुरल एनवॉरमेंट ब्यूटी को देख पा रहे हैं।